यह गाँव है गाँव बहुत घना है इसमें टावर दिखाई दे रहा है पेड़-पोधा दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा झील है |

इसमें बत्ती भी लगा हुआ है दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है।

बहुत सारा चीजे बिक रहा है रंग-बिरंग का फुल है गेंदा का फुल है चुनरी से उसमें लगाया गया है बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है ।

यहाँ पे बाजा बज रहा है लग रहा है कोई प्रोग्राम हो रहा है। बहुत सारा आदमी खड़े हैं।

जो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है हाथी काला है इसमें बहुत सारा आदमी है रैली निकला हुआ --

कम बहुत सारा मछली रखा हुआ है।

यहाँ पे दुर्गा माँ का मूर्ति है। राक्षश है। राक्षश को दुर्गा माँ त्रिशूल से गाथ दी है।

बहुत सुंदर है।